अ कुछ बात करने के लिए और यह अ इमारत काफी बड़ी और खूबसूरत दिखाई दे रही है।

एक खाली मैदान और बहोत खूबसूरत भी लग रहा है यह देखने में साफ सुथरा--

तिरुपति हॉस्पिटैलिटी अ मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल को दिखाया गया है।

प्रस्तुत चित्र को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह एक --

और जिसमें एक मामूली सी गेट है और कुछ अलमारे काफी खराब और पुरानी वस्तुएं भी रखी हुई है शायद यह बहोत ही पुराना घर है।

प्रस्तुत चित्र काफी अनोखा दिखाई दे रहा है यहां एक बहुत बड़ी सी चट्टान दिखाई दे रही है।

प्यारी सी बच्ची दिखाई गई है जिसका चेहरा उते अच्छे से नहीं दिख रहा है उसके बालों के डिजाइन का पिक्चर है यहाँ--

यह दृश्य काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है सुबह का वक्त है।

बिल्डिंग्स की चित्र है जहां कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं कई खिड़कियां दरवाजे भी दिखाई दे रहे हैं।

जहां अह रोज के पेटल्स रखे हुए हैं अह ऑरेंज कलर की मालाएं बनी हुई हैं पिलर में।

और दस ग्यारह बारह करके यह बने हुए हैं कुछ प्लेटफार्म भी बने हुए है।

हम्म प्रस्तुत चित्र एक बागीचे का चित्र है जहां कई तरह के--

बाहर का चित्र है यहां का एडवर्टाइज अह यहां का विज्ञापन लगा हुआ है श्री ओम पी_जी एंड होमस्टे ।

प्रस्तुत चित्र एक काफी साधारण सा चित्र है जहां एक मामूली सी सड़क है कुछ लोग बातें कर रहे हैं एक दुकान दिखाया जा रहा है जहां खाने-पीने की वस्तु वस्तुएं दिख रही है कुछ बच्चे भी हैं।

हरे रंग की बेंच भी है और कई वृक्ष भी दिख रहे हैं प्लस साथ में कुछ इमारते भी दिखाई दे रही है।

प्रस्तुत चित्र में हम एक मस्जिद को देख सकते हैं यहां कई बच्चे--

और बहुत सारी सामानें इधर उधर बिखरी हुई है तो यह काफी साधारण सा चित्र दिखाया गया है।